आ बारीक़-बारीक़ घास भी दिख रही है।

बहुत सारी आ बुक लटकी हुई दिखाई दे रही है।

बुक्स स्टॉल में एक लड़की बैठी हुई दिख--

और अ भीतर पर एक टीबय टीवी भी दिखाई दे रहा है।

आ दुकान में दिखाई दे रहे है ओर एक लड़की --

आ दुकान में चाय पीते हुए दिखाई दे रहे है।

अ पालनी भी गड्डी पाल पालना गडडिका पालना दिखाई दे रहा है।

आ दुकन है और दुकान में बहुत सारे रेको में किताबें रखी हुई है।

क्यूँकि आगे कुछ आदमी खड़े हुए --

आ बाजू में नारियल की ओर बहोत सारे पौधे भी आ अ पार्क में आ अ दिखाई दे रहे है और--

आम उसके पास यह एक आदमी --

यह एक गड्डियों की रिपेयरिंग की दुकान दिखाई दे रही है।